इस दृश्य में बहुत सारी व्हाइट प्लेटे और कटोरिया नजर आ रही है।

चम्मच भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य में एक बिल्डिंग नज़र आ रहा हैं उस पे शीशे लगी हुई है।

यह दृश्य में एक कार की शोरूम दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारे कारे लगी हुई है।

एक फोनपे का स्टीकर भी दिखाई दे रहा है।

चुन्नी वगैरह भी रखा हुआ है।

ये पेड़ नजर आ रहे हैं।

दृश्य में बहुत से गुलदस्ते रखने की पॉट्स दिखाई दे रही है जो बहुत ही कलरफुल हैं।

एक व्हाइट कलर की टेबल की तरह चीज बनाकर के उसे पे रखी हुई है।

पीछे की दीवार कुछ काली और लाइट क्रीम कलर की दिखाई दे रही है।

सामने की दीवार पर लाइटे भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

दृश्य एक बिल्डिंग का दिखाई दे रहा है।

एक आदमी का दो हाथ भी दिखाई दे रहे हैं।

बोड़े भी रखे हैं और बाल्टी भी नजर आ रहे हैं।

इसपे कुछ लिखा हुआ है सिलिंग पर फैन भी नजर आ रहे हैं।

एक तराजू भी रखी हुई नजर आ रही हैं।

दृश्य एक बिल्डिंग का दिखाई दे रहा है।

छोटा सा बोड लगाके ढाबा रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे और मैदान भी नजर आ रहे हैं।

उसके पीछे एक टेबल फैन भी नजर आ रही है।

कुछ आदमी काम करते हुए नजर आ रहे है।

एक रेती रखा हुआ है और एक डब्बा भी रखा हुआ है।

सिलिप बना करके उसपे भी कुछ समान वगैरा रखे हुए हैं।

एक बोर्ड लगा करके लिखा हुआ है विकास इंटरप्राइजेजेस ।